पर्पस नजर आ रहा है कलर गा --

येलो फूल अउउ उनको भेज रहे हैं। उनको रहे हैं और काफी --

रात का समय हैं अ रस्ते में दो गाड़ी रुकी हुई हैं खड़ी हुई हैं लाइट्स ऑन है।